रोड के ए दोनों साइड कार चल रही है।

ऊपर ए.सी लगा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

प्लेन खड़ा हुआ है।

पे एक चर्च है।

सब्जी मंडी में सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं।

दूल्हे ने मेहरून कलर की पगड़ी लगाई हुई है।

सभी सांता क्लॉज की केप पहने हुए है।

स्टूल रखा हुआ है ब्लू कलर का।

टेट _बैंक_ऑफ़_इंडिया का ए_टी_एम है।

--केक केक फोटो केक लिखा हुआ है अवेलेबल है।

राजस्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद वैतरई बिलासपुर छत्तीसगढ़ लिखा है।